और कुर्सियां हैं मेज हैं यहां पर और बहोत सारे लोग यहां पर अं कुछ खा रहे हैं और यहां सजा हुआ है झालर लगी हुई टीन शेड भी पड़ा हुआ है और यहां काउंटर बना हुआ है।

और यहां उस उसने आदमी ने यहां पर जर्सी पहन रखी है और सब जगह--

उसके पीछे अलीबाबा का ही डॉट कॉम का पो लिखा हुआ है सारे में।

और यहां पे लिखा है शिकाबु अनुभक्ति--

इधर एक चेयर रखी है चारो तरफ--